और साइड में म-म-बहु स क-क हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है आगे भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक प्राथमिक शिक्षा केंद्र है आगे जो है सारा ग्राउंड है।

मशीन बहुत सारी रखी हुई हैं आगे एक कांच लगा हुआ है ।

एक बहुत बड़ा मैन गेट लगा हुआ है यह एक ब्लैक कलर का है अंदर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

लाख यही है लाख के दिल में एक बनाकर हैं फोटो लगाए गए हैं और नाम भी लिखा हुआ है।